और इस कार में लाइट भी लगी हुई है सामने एक आईना लगा हुआ है।

इस हाथी पर एक आदमी चढ़ा हुआ है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा है।

हाथी के दो दांत नजर आ रहे हैं और इस हाथी के पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो की कुछ कार्य कर रहे हैं।

और इनके ऊपर एक ओवर ब्रिज बना हुआ है।

सामने कुछ व्यक्ति बाल कटवाते हुए नजर आ रहे हैं।

बैंक के बाहर बहुत सारी गाड़िया लगी हुई है और एक ठेला भी लगा हुआ है गाड़ी की कंपनी हीरो का है।

टेबल के बगल में दो कुर्सी नज़र आ रही है जिसपर एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक ला--

और इस बस में नंबर प्लेट भी लगा हुआ है।

सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर रूपक लॉज लिखा हुआ है।

पहाड़ के ऊपर एक खंबा गड़ा हुआ है और यह पहाड़ काफी ऊंचा और बड़ा दिखाई दे रहा है।

यह लाइब्रेरी देखने में काफी बड़ा लग रहा है इस लाइब्रेरी में ए_सी लगा हुआ है।

फोटो में बहुत सारी लाइटें नजर आ रही है जो की सफेद और भी कई रंग के झालर वाले लाइट से सजाया गया है।

और एक कॉर्नर में साई दा ढाबा भी लिखा हुआ है।

और इस कपड़े की दुकान में स्कैनर भी लगा हुआ है।

यह एक लाइब्रेरी हैजहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैंऔर इस लाइब्रेरी में एक घड़ी भी लगा हुआ है जिस पर अभी बारह बज रहा है।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

और इस गार्डन में हरे रंग का चार्ट भी बिछाया गया है।